ये फोटो में एक बरा सा क्लॉक टॉवर दिख रहा है यह क्लॉक टॉवर लाल रंग का है।

कुकीज के डब्बे दिख रहा है इसके पास काफी बनाने वाला मशीन भी दिख रहा है।

इसमें एक पिलर भी नजर आ रहा है पिलर के ऊपर में दो पंखा भी लगाया गया है।

ऊपर में भी काफी सारे लाइट हैं जल रहा है दीवार में काफी सारे खिड़की भी दिख रहा है।

नीचे में छोटे छोटे सूखा सूखा एक ग्रास दिख रहा है।

कारपेट भी बिछाया गया है कोने में एक भगवान के तस्वीर भी दिख रहा है।

सामने में स्त्री और हीटर का कार्टून बॉक्स रखा गया है।

कोने में सोफा भी बनाया गया है।

उसके ऊपर कुछ कुशन भी रखे गए है।

कोने में तीन इंसान भी दिख रहा है इंसान के हाथ में छाता पकड़ के है।

फूल के पोट भी रखे गए हैं कोने में एक छाता भी दिख रहा है।

में एक आदमी का पुतला रखा हुआ है।

सामने में एक रस्ते दिख रहा है रस्ते के कोने में लाइट का पिलर भी--

आसमान भी काफी साफ नजर आ रहा है इस घर में रेस्टोरेंट और दुकान खोला गया है।

आसमान भी नीले रंग का दिख रहा है।

ये फोटो में काफी सारे लोहा दिख रहा है कुछ लोहा सिल्वर कलर का है।

नीचे में भी लोहा का टेबल रखा गया है।

ये फोटो में एक मंदिर दिख रहा है अंदर में एक मूर्ति भी रखा गया है।

ये पिलर ब्राउन रंग का है पास में एक दिया भी जला के है अंदर में एक लाइट भी जल रहा है।

काफी सारे सामान रखें गए है दुकान के अंदर में भी इंसान बैठे हुए हैं।

ये फोटो में एक चाय पत्ती बागान दिख रहे हैं इसमें काफी सारे चाय पत्ती के पेड़ भी दिख रहे हैं सामने में काफी बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

तार भी दिख रहे हैं आसमान भी काफी साफ नजर आ रहा है।

दूर में एक छोटे से इंसान भी देख रहे हैं उसके पास एक करेंट का खंबा भी दिख रहा है।

बिल्डिंग में एक सीढ़ी भी नजर आ रहा है।

रास्ते में बस भी चल रहे हैं कोने में इंसान भी दिख रहा है।